बहुत ऊँचे-ऊँचे पहाड़ नजर आ रहे हैं | बहुत दूर-दूर तक हरियाली नजर आ रही है।

आस-पास साफ-सफाई का बहोत ध्यान रखा हुआ है बहोत पेड़-पौधे और हरियाली की हुई है यहां पे।